ये एक कमरा है जिसमें तीन कमोड रखे हुए है वेस्टर्न ।

ये एयरपोर्ट की फोटो है जहां पे--

पेड़ों से पूरा घिरा हुआ है चारो तरफ हरा हरा पेड़ है।

माता के पास और गणेश जी भी हैं।